जोकि हर अलग अलग प्रकार के हैं।

और यहां पे काफी अच्छा सा नजारा भी है।

केबिन दिया है जीसमें काफी सारे छात्राएं बैठ के पढ़ रहे हैं।